काफी सुंदर ये सैलून शायद लग रहा ओपनिंग हुआ है गुब्बारा वगेरह ये सब लगा हुआ है काफी सुंदर नज़ारा यहाँ है यहाँ का।